देख सकते हैं सजा भी रहे हैं और कई लाइट लगाया हुआ हैं जो की देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा हैं और बैलून भी लगाया।

देख सकते है यह कपड़ा दुकान है और बहुत ही बड़ा बनाया गया है और देख सकते है कई प्रकार के लाइट भी लगाए गए है और सभी लोग यहाँ पे कपड़ा लेने के लिए आए हुए है देख सकते है कई प्रकार के कपड़े यहाँ पर है।